जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं।

यह पिक्चर किसी फंक्शन की पिक्चर है।

लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीचे हरे रंग कारपेट बिछा हुआ है और बहोत सुंदरता से इसे डिज़ाइन किया गया --

में बहोत सारे गद्दे पर्दे चदरे कम्बल --

यह एक इमारत है। बोहोत बड़ी इमारत है।

आधी बिल्डिंग में रेड और आधी बिल्डिंग में येल्लो कलर है।